कई सारे बैग वेग दे रहीं हैं।

एक कांच की कांच की

ये वाले पोटे गए है पर्दे लगे गए है ये वाइट कलर के सामने के ओर दिखाई दे रहे हैं घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

इधर सोफे दिखाई दे रही है व्हाइट कलर से पोता गया है लाइटिंग जलती हुई दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में सामने को एक डॉक्टर बैठा हुआ दिख रहा है एक छोटा सा--

सामने को हरे भरे पेड़ पौधे लगे दिखाई दे रहे हैं।

सामने से हल्की रोशनी आती हुई दिखाई दे रही है। आजूबाजू कई सारे इंसान खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

मुझे इस फोटो में सामने की ओर कई सारा अनाज डला हुआ दिखाई दे रहा--

किधर फावड़े टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं दो इंसान अंदर को जाते हुए दिखा सामने की ओर एक कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है आजू-बाजू त आजू-बाजू तीन लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

सामने की ओर एक शीशा लगा हुआ है आजू बाजू दिवाले व्हाइट कलर की पुती हुई दिखाई--

व्हाइट कलर की लाइटिंग जलती हुई दिखाई दे रही है कई सारी अलमारियां कई सामान वहां रखा दि दिखाई दे रहा है नीचे वाल--

नीचे की ओर बैठने की टाइल्सें लगी हुई हैं सामने का के सारे समान वमान रखे हुए दिखाई दे रहे एक इंसान साइड में एक इंसान चादर बिछा के नीचे की ओर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है कलर के --